नीचे बोहोत सारी कार और वैन खड़ी हुई हैं।

यहां एक बड़ा सा लॉन है जिस पर सामने वाल खंभा लगा हुआ है।

ये एक बड़ा सा पार्क है जिसके साइड में रास्ता दिया गया है।

पीछे वाले कार खड़ी है सफेद कलर की।

बहुत सारी बिल्डिंगें लगी हुई हैं सामने वाल और बहुत सारे बच्चे योगा कर रहे हैं।

सामने की दीवार पर फायर ब्रिगेट कार्ड लगा हुआ है।

लाइन से बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं ग्रीन कलर के और लोहे के जालीदार रेलिंग लगी हुई है।

बगल में बोर्ड लगा है जिसमें तीन अ औरतें खड़ी हैं।

बिल्डिंग है बड़ी सी जो कि सफेद कलर की है।